ईंटें भी दिख रहे हैं।

ब्राउन कलर का डिब्बा दिख रहा है है।

गिटार नजर आ रहा है।

यह एक जिम का दृश्य है।

जिम में एक चटाई दिख रहा है।

इस दृश्य में मशीन रखे हुए नजर आ रहे है।

और चार्जिंग भी है।

जो कि फूल पौधे लगाए हुए हैं।

खिड़कियां दिख रहे हैं जोकि खिड़कियां बंद है।

बेड पे पड़े दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

बैग दिख रहा है।

बल्ब भी दिख रहे हैं।

थाली में रखे हुए फूल दिख रहे हैं।

छोटे छोटे गमले में फूल उगाए हुए दिख रहे हैं।

कुछ चित्र भी दिख रहा है लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इस दृश्य में बहोत सारे टिबिए दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति बाल काटते हुए नजर आ रहा है।

टीवी भी नजर आ रहा है।

छोटे छोटे बैनर दिख रहे हैं।

कुछ बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं।

सारे पौधे नजर आ रहे हैं हरे भरे हैं।

इनमे बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

बालू भी दिख रहा है।

यह एक शोरूम का दृश्य है।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

एक बड़ सा बैनर दिख रहा है जो कि कुछ लिखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

प्लास्टिक में कुछ रखे हुए भी हैं।

टेबल दिख रहा है।

ब्लू कलर के कुर्सी दिख रहा है।

कुछ लिखे हुए भी हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा चित्र बनाया हुआ दिख रहा है जो कि कुछ लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए देख रहे हैं।

ऊपर टांगे हुए टी_वी दिख रहा है जो कि टी_वी चलते हुए नजर आ रहा है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक समुंदर दिख रहा है।

बहोत सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।